हैं इस डैम को देखने बहुत दूर-दूर से आदमी आते हैं। यह डैम बहुत ही बड़ा --

नाश्ता पानी करते है | यह स्टैंड बहुत बड़ा है ।

यह एक होटल है इस होटल क में होटल डी.आर.एस. डीलक्स का लगा हुआ है।

यह लखीसराय कोर्ट है। यहाँ बोर्ड में लखीसराय संग्रहालय लखीसराय लिखा हुआ है।

बिल्डिंग के रूम में अलग-अलग दुकान दिया गया है। यह बाजार जैसा लगता है।